सामने के दीवार पर एक स्क्रीन लगी हुई है उसके नीचे काफी सारी ट्रॉफी राखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है अंदर के साइड एक टीन शेड डाला हुआ है।

एक बड़ी सी जगह है जहाँ पर बहुत सारी पत्थर की चेयर्स बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए है।